और यहाँ पे एक हमें बहुत घना पेड़ भी दिखाई दे रहा हैखम्बा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और बहोत सारे लोग भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे है और यहाँ पे शाम का टाइम है हमें आसमान भी दिखाई दे रहा है।

और थोड़े बहुत हमको यहाँ पर पेड़ वगैरा भी दिख रहे है और उनमे खिड़किया भी दिख रही है जिनमें उम् ब्लैक कलर का कांच लगा हुआ है कुछ खिड़की खुली हैकुछ ल--

देखिये हमारे सामने यहाँ पर एक बिजली खम्बा दिखाई दे रहा है बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है दिखाई दे रहे है।

इनके पीछे हमें एक ब्लू कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है साइड में एक छोटी सी एक इमारत बनी हुई दिखाई दे रही है और उन लोग हाथ फैलाये हुए बैठे हैं आते है।

यहाँ पर हमे बोहुत सारा पानी ही पानी नज़र आ रहा है पानी में बोहुत सारी नाव नज़र आ रही है और राईट साइड में हरियाली ही हरियाली हरे हरे पेड़ नज़र आ रहे है।

हमे यहाँ पे बहुत सारे खम्भे दिखाई दे रहे है और पेड़ दिखाई दे रहे है हमे यहा पर लम्बे लम्बे बिजली के वायर दिखाई दे रहे है नीचे में ग्रीन ग्रीन घास दिखाई दे रही है यहा मे हरे हरे पेड़ नजर आ रहे--

इस में बहुत सरे लोग दिख रहे है ऊपर आसामन दिख रहा है दोपर का टाइम है दिख रहा है दोपर के का टाइम है तेव दिख रहा हैं।